यह एक कक्षा है और बारान्दे में सभी लोग प्रतियोगिता कर रहे हैबच्चे लोग सब खड़े हुए हैं ।

यह एक स्कूल है और यहाँ पे कुछ प्रोग्राम हो रहा है जैसे दिखाई दे रहे है उसके ऊपर बी डी वर्ल्ड स्कूल लिखा हुआ है।

और वो व्यक्ति अपने हाथ में मोबाइल को भी पकड़ा हुआ नज़र आ रहा है